यहाँ पे भी कुछ फंगक्शन चल रहा है इसके बाहर एक टेंट लगाया जा रहा है टेंट का रंग लाल कलर का है बाहर कुछ आदमी भी खड़े हुए है और कुछ अंदर भी आदमी खड़े --

यह कोई बिल्डिंग जैसी दिखाई दे रही है लेकिन पता नही ये बिल्डिंग किस चीज़ की है य जहाँ कुछ रख दि यहाँ पे कोई रहता है या कुछ पता नही चल रहा है इसके बाहर कुछ बाइक रखी--

कुछ पेड़-पौधे सूखे हुए है और कुछ हरे-भरे है ऐसे बहुत बहुत लंबे-लंबे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है लग रहा है कि जैसे केले के --

यह एक ग्राउन्ड जैसा दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर शायद क्रिकेट खेली जा रही है क्योकि यहाँ पर विकेट लगे हुए है और बहुत सारे लड़के भी दिखाई दे रहें है।